लोहे का ग्रिल है और उसका दीवार उजरे रंग का है और निचे टाइल्स लगा हुआ उजला रंग --

है साबुन है शेम्पू है ओट्स है हॉर्लिक्स है बोर्नवीटा है।

एक टम्पू है टम्पू पे सामान लदा हुआ है वो पूल से जा रहा है एक आदमी है बगल में खड़ा।

एक लड़की डांस कर रही है लहंगा पहनी हुई है लाल रंग का।

अ आरो जूता पहने हुई है नीचे में बहोत सारे बुरादे गिरे हुए है पीछे --

बगल में खेत है पीछे बड़े-बड़े से पेड़ है आसमान साफ है।

और भी एक दुकान है जिसका शटर का रंग पी नीला है और बगल में दीवाल को प्लास्तर नहीं किया --

जमीन पर भी खड़े है एक मुंगफली का भी ठेला लगा हुआ है ।

कुछ लोहे के पीलर का छड़ दिख रहे है आसमान साफ है आसमान का रंग नीला है।

यहाँ पे कुछ बच्चे हेंडीक्राफ्ट बना रहे है और एक बच्चा अपना प्रोजेक्ट लेकर खोला हुआ है और --